एक सामने की तरफ बिल्डिंग हैं उसके आसपास --

यहाँ पर बिल्डिंग में अंदर जाने के लिए एक अ --

जिम करते हुए डंबल्स को उठाते हुए दिखा रहा हैं और पीछे की साइड भी कुछ लोग जिम कर रहे हैं ।

बांबू लगे हुए जिससे अ सब लाइट्स वगैरह दी अ --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

या एक प्लेटफार्म हैं प्लेटफार्म के नीचे पटरियाँ दिख रही हैं और कुछ ही दूरी पर --

यह एक स्विमिंग पूल है कुछ लोग अंदर स्विमिंग पूल में स्विमिंग पूल करते हुए दिख रहे हैं और कुछ बच्चे--